उस पर ग्रीन कलर का बोर्ड लगा है।

एक आदमी लकड़ी के नीचे खड़ा है।

इस फोटो में मुझे प्रकृति दिखाई दे रही हैं।

रेलवे स्टेशन का चित्र दिखाई दे रहा है इस चित्र में लोहे की--

चित्र में दो तीन पेड़ भी लगे हुए हैं।

शेल्फ का कलर सफेद लाल है।

काफी सारे गहने दिखाई दे रहे हैं।